यह मंदिर की पिक्चर है जो ग्राम जनक मंदिर है। यहाँ पर के आस पास के लोग यहा इस मंदिर मे आते हैं पूजा पाठ करते हैं हर वक्त सुभा साम ।

यह स्टैचू वीर पुरुष महात्मा गांधी की स्टैचू है जो लाठी लिए खड़े है ।

साड़ी लहंगे वगेरा सारे लगे हुए कलरफुल लहंगे वगेरा है और रो मे चेयर्स लगी हुई ----

यह एक अअ-- सबरंग मैचिंग सेण्टर है जहा पर --

च्छा-- सुंदर कलर से और इसके सजावट के लिए फिर आस पास में पेड़ वगेरा लगी--

यह एक मंदिर की पिक्चर है जो मंदिर के अगल बगल मे बोहत बड़ी पहाड़ है पेड पौधे लगे हुवे है और साफ साफ सुथरी मंदिर है कुछ लोग अंदर है।